इसमें चार ड्रॉवर नजर आ रहे हैं उसमें बहोत सारा सामान नजर आ रहा है कुछ बिस्किट के पैकेट्स हैं।